बहुत सारे आदमी साइड में खाना खा रहे हैं।

गच्ची के सामने एक पोस्टर लगाया है।

सी_सी_टी_वी के नीचे द गैजेट वर्ल्ड लिखा है।

ये पिक्चर में मुझे बहुत सारी मैगी दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में मुझे बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहा है।

आदमियों के पीछे बहुत सारे बलून है।

ओ दुकान में बहुत सारे कपड़े हैं।

रैक के ऊपर बहुत सारे लाइट लगा है।